इस बैंड के ऊपर मुझे कुछ स्पीकर्स भी साफ साफ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

फोटो के अंदर मुझे एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है जोकि कॉपी किताबों की है।

देखने में ये काफी छोटी सी दुकान लग रही है।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

इस फोटो के अंदर मुझे एक बड़ा सा बगीचा नज़र आ रहा है जिसमें बहोत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।